इस चित्र में हमें एक पार्क दिखाई दे रहा है।

कुछ गाड़ियाँ नजर आ रही हैं।

जिनमें हमें पंखा नजर आ रहा है।

बच्चों ने पीली टी_शर्ट पहनी हुई है।

काफी सारी मिट्टी पड़ी हुई है।

बिल्डिंगें नजर आ रही हैं।

एक आदमी ने जामुनी शर्ट पहनी है।

कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं।

एक साइकिल खड़ी हुई है।

हमें कुछ गमले नजर आ रहे हैं।

जो पत्तियाँ बेंच रहे हैं।

इस चित्र में हमें कुछ गाड़ियाँ नजर आ रही हैं।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

कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं।

जो पूरा कांच का बना है।

कुछ कुर्सियाँ रखी हैं।

कुछ आदमी दिख रहे हैं।

कुछ घर बने हुए हैं।

कुछ फुक्के लगे हुए हैं।

कुछ फुग्गे नजर आ रहें हैं।

सामने पैकेट टंगे हुए हैं।

काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं।

कुछ लोग दिख रहे हैं।

इस चित्र में एस_ बी_ आई_ बैंक नजर आ रहा है।

जिसका दरवाजा कांच का है।